ये बेगनी कलर का बस दिख दिख रहा है और येल्लो भी है और एक बुजुर्ग उसपे चढ़ते हुए नजर आ रहे है कुछ घर भी हैं ।

यह छत छत का ढलाई हो रहा है दो आदमी है।

ओर ये लोग विधार्थी सब अंदर जा रहे हैं और ये बहार में टीचर लोग भी घूम रहे है और--

मा पिलर हे जो की रेड कलर का हे ओर बोंदरी घेरासा हुवा हे तार लगा हुवा हे इसमें--

रेड कलर का दान पेटी है और फरश नीचे फरश है और पेड़-पोधे भी हैं बहुत सारे--